लग रहा है कि बस स्टैंड है यहाँ पे देखने लायक है इधर बस लगा हुआ है इधर स्कूटी --

यहाँ चल रहा है यहाँ कॉफ़ी पी रहे है कुछ लोगो ने--

टहल रहा हैं सुबह-सुबह के टाइम है।